पोस्टर दिखाई दे रहा है लक्ष्य इंटरनेशनल अकेडमी ल लिखा है।

एक बाइक पर एक महिला और आदमी बैठा है और--

अ उसमें खड़ा हुआ हमें आदमी भी नजर आ रहा है।

और कांच के ऊपर लगा हुआ है कांच का गेट है हमें नजर आ रहा है।

कपड़े लटके हुए दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग पर।

महिलाएं हाथ ऊपर करे हुए और एक पैर ऊपर करे दिखाई दे रही हैं खड़ी हैं।

तस्वीर के अंदर हमें हरी हरी घास दिखाई दे रही है।

तस्वीर के अंदर हरे-हरे पत्ते हमें--

और उद उस पर खड़ा हुआ मिट्टी पर हमें एक--

गाड़ियां हमें लाइन से खड़ी नजर आ रही हैं।

तस्वीर के अंदर हमें आदमी दिखाई दे रहे हैं।

अ उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे--

खिड़कियां हमें बनी नजर आ रही हैं जालियां लगी हैं।

अ पीले रंग की साड़ी है पीले और लाल--

ऊपर छत में झूमर लगा हुआ है पर्दे हमें--

नीचे हमें बहुत सारी कुर्सियां सफेद--

हमें इस तस्वीर के अंदर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है सड़क पर।

और लोग हमें दिखाई दे रहे हैं चलते फिरते हैं खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

चेहरे हमें दिखाई नहीं दे रहे और पर्दे हमें लगे हुए नजर आ रहे है।

स्किन एंड इंक टैटूस का हमें बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और चुना भट्टी कोला रोड भोपाल--